बलटियाँ दिख रही हैं जो कि सफेद और नीली दिख रही है जो कि बहोत ही सुंदर लग रही है। ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि बहोत ही बढ़िया बहोत ही सुंदर लग रहा है बहोत ही अच्छा लग रहा है बहोत ही प्यारा बहोत ही सुंदर लग रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है बहुत बढ़िया हमको नदी दिख रही जो की बहुत प्यारी लग रही है।

देख सकते हैं सामने हमको एक कोविड किट पहना हुआ एक आदमी दिख रहा है जो कि सनिटीज़ाइज़ करते हुए एक लेडिस को दिख रहा है। लेडिस के हाथ में पर्स दिख रहा --

गंगारपुर मुन्सीपाल्टी का बैनर लगा हुआ है। पीछे दिख रही है मुन्सीपाल्टी की। बैनर लगा हुआ दिख रहा है जो कि नीला कलर का दिख रहा है। लोग बाग दिख रहे जो आते जाते दिख रहे। पीछे पेड़ दिख रहे जो कि हरे दिख रहे जो कि बहोत --

सेब फल दिख रहे हैं अनार दिख रहे हैं केले दिख रहे हैं लीची दिख रही है जो कि बहोत ही बढ़िया लग रही है। ऊपर पीली दीवार दिख रही है जिसपर दुकान का नाम दिख रहा है। एक लड़का दिख रहा है जिसने महरून और काले कलर की टी-शर्ट पहन रखी है जो हिसाब करते हुए दिख रहा है। उसके हाथ में पैसे दिख रहे हैं।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने एक आदमी दिख रहा है जो कि कपड़े पहना खड़ा हुआ है। उसने शर्ट पहना है जो कि व्हाइट दिख रहा है। नीचे पैंट पहनी है जो कि जींस की दिख रही है। उसने शूज पहने हैं जो कि काले कलर के दिख रहे हैं। एक हेलमेट पड़ा हुआ दिख रहा है जो कि रेड और ब्लैक दिख रहा है।